ये पीले कलर से पुता हुआ है और काले कलर से लिखा हुआ है। यहां पे एक दरवाजा है जिस पे नीला और पर्पल कलर से बना हुआ है।

एक इस फोटो को बनाया हुआ है और पास-पास में यहां ईटे के ढेले पड़े हुए है और हरे कलर से पेड़ पौधे समझ में आ रहे हैं।

और बगल मे दो रैक बने हुए हैं जिनमें बहुत सारे समान रखे हुए हैं नीचे एक तगाड़ी है और दो लाल कपड़े पड़े हुए हैं।

जैसा की आप इस फोटो मे देख रहे हैं यह तीन नहर जैसा समझ में आ रहा है जहाँ से पानी बह रहा है।

जैसा की आप देख रहे है यह एक मैदान समझ में आ रहा है।

जैसा की आप देख रहे हैं यह एक पहाड़ से ली गई फोटो है।

और उड़ती हुई चिड़िया भी दिख रही है यहाँ हरे मैदान है और बिल्डिंग बनी हुई है किनारे-किनारे बेठने के लिए।

जैसा की आप देख रहे है यह डॉक्टर फरुग हसन का अस्पताल है।